मुझे इस पिक्चर में बहोत सारी टेबल और बहोत सारी चेयर दिखाई दे रही हैं।

फिर मुझे एक पीनाई के घर भी दिखाई दे पा रही है फिर ऊपर में भी वायर भी रख दिखाई दे रही है।

चड्डी दिखाई दे रही है फिर साइड में बहोत सारे फूल भी दिखाई दे पा रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक घर दिखाई दे रही है और इस घर की --

भी यहां में बहोत सारी सामान सब भी रखा हुआ दिखाई दे रही है।